ड्रेसिंग टेबल नजर आ रही है जिस पे कई शीशियां रखी हुई हैं |

आस-पास घास दिखाई दे रहीं हैं।

हरे रंग की घास नजर आ रही है।

एक हाथ में घड़ी दिखाई दे रही है।

कुछ पुस्तके टंगी हुई दिख रही हैं कुछ आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं ।

एक आदमी दिखाई दे रहा है।

एक इमारत नजर आ रही है जिसपे एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

सूर्य दिखाई दे रहा है एक खंभा नजर आ रहा है।

टेबल पर कुछ लैपटॉप रखे हुए हैं और लेनेवो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक काँच का गेट नजर आ रहा है।

कॉरिडोर दिखाई दे रहा है।

पेड़ की पत्ती नजर आ रही है।

हरी घास भी दिखाई दे रही है एक पेड़ नजर आ रहा है।

बिजली के कई तार नजर आ रहे हैं।

एक इमारत नजर आ रही है।

एक पूल नजर आ रहा है एक बड़ी फिसल पट्टी नजर आ रही है।